बिल्डिंग में ऊपर तीन खिड़किया लगी हैं खिड़की के ऊपर भी एक बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ गेट भी लगे हुए हैं | गेट कांच के लगे हुए हैं | आसमान भी दिख रहा है | बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं | कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं जिनकी पत्तियों का कलर ग्रीन है।

एक गेट भी लगा हुआ है जिसमे एक रेड कलर का पर्दा लगा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं जिनकी पत्तियों का कलर ग्रीन है बहुत सारे लाइट के खंबे भी लगे हुए हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई --

एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है जिसमें चॉक डला हुआ है बहुत सारी मिट्टी डली हुई है थोड़ी बहुत घांस भी लगी हुई है घांस की पत्तियों का कलर ग्रीन है।

एक बहोत बड़ा मैदान दिख रहा है जिसमें बहोत सारी घास लगी हुई है घास की पत्तियों का कलर ग्रीन है और कुछ पानी भी भरा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जिनकी पत्तियों का कलर ग्रीन है आसमान भी दिख रहा है | सड़क के ऊपर एक डॉग भी बैठा हुआ है।

एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है जिसमे बहुत सारी घास लगी हुई है घास की पत्तियों का कलर ग्रीन है ग्राउंड में बहुत सारी गाड़िया खड़ी हुई है जिनमे से कुछ वाइट और कुछ ब्लैक है।

एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी बनी हुई है इसमें भाइट कलर का पेंट किया गया है बहोत सारे लोग भी दिख रहे हैं।

चारों साइड बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं आसमान भी दिख रहा है और ग्राउन्ड के सामने एक सड़क बनी हुई है जिसपे बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं | बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जीनकी पत्तियों का कलर भी ग्रीन ही है।